वाइट चॉकलेट का बना हुआ है जिसमे रेड कलर का--

मस्त कला कृति किया गया है जो दिल आकार का है बहोत ही सुन्दर है।

फूल-पौधे लगे हुए है और बीच में एक फव्वारा भी लगा हुआ है जो बहोत सुन्दर दिखाई दे रहा है।

नहीं ये छठ नहीं शायद ये एकादशी पूजा स्थल है क्युकी बीच में एक चौराहा भी है और चारो तरफ से गन्ना रखा गया है और सब भी महिलाए पूजा कर रहे है।

दीपक वस्त्रालय रामानुजगंज का फोटो है जिसमें दो नीला चेयर रखा गया है स्टूल रखा गया है और--

बहोत सारी बुक स्टाल लगी हुई है जिसमे पीछे प्रगति बुक सेंटर --

सुदर्शन बुक हाउस और लौ हाउस दिखाई दे रहा है ये किस जगेह का है पता नहीं परन्तु इसमें में बहोत सारी अच्छी-अच्छी किताबे रखीं हुई है।

किसी चुटपुँजिया झोला छाप डाक्टर का क्लिनिक दिख रहा है जिसमे चेयर तो रखा हुआ है और उसमे हरा-हरा कपड़ा भी बिछाया हुआ है लेकिन डाक्टर अनुपस्थित है अ पीछे कुछ लोकल छाप दवाई भी दिखाई दे रहा--

सफ़ेद रंग से पोताई की गई--

न्यू बस स्टैंड नगर पालिका परिषद् बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ का बस स्टैंड है इसमें यात्री प्रतिसाले भी--

अंबिकापुर है जिसके अंदर एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी है जहाँ कि सीज़्ज़लेर्स बहोत ही अच्छी लगती है परन्तु उसका दाम बड़ा ही महँगा है चार सौ पचास रुपये का मिलता है जो मै खा के आई थी--

चिड़िया का पता नहीं चल रहा है परन्तु--

सब कहाँ देख रहे है पता नहीं--